कॉफ़ी पकड़ा हाथ में और सामने दुकान में नीला सा बोर्ड लगा है।

एक ने आदमी ने शर्ट पहना हुआ है जूता पहना हुआ है जीन्स पहना हुआ है एक बच्चे को हाथ में लिया हुआ है।

ऊपर सफ़ेद आसमान है उस बिल्डिंग सफ़ेद कलर की है सामने एक इंसान हैसफ़ेद कपडा पहना हुआ है एक लेडीज हैनीले से कलर की साडी पहनी है।